और इस यहां पे प्याज के लोग मोलभाव करवाने में लगे हैं कोई क्या कर रहे हैं कोई क्या कर रहे हैं सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा इधर।

बहोत सारे यहां पे दिखाई दे रहा है कि ए_टी_एम वगैरा सब कुछ इसमें है और यह रात का सीन है सारी शोपस् बंद है अभी--

मस्जिद का ये फोटो है इसमें नमाज का टाइम हो रखा है अं कुछ नमाज अदाई अ चा तीन --

ये दो पर्सन है जो सामने से जा रहे धूप मे और अंदर कुछ लोग खड़े हुए है बिल्डिंग के अंदर --

एकदम मनोरम लग रही है और देखा जा रहा है कि अ राधा और कृष्णा बिल्कुल एकदम --

यह दृश्य किसी फंक्शन का लग रा है यहां पे दो लेडीजे है।

सामने कुछ बिल्डिंगे है बड़ी बड़ी कुछ घर भी है और बिल्कुल ये सुबह का नजारा है।